इस तस्वीर में बहुत लोग दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में दो मंजिला इमारत दिख रहा है ।

दुकान पर बड़े अक्षरों में--

जो अपना कार्य कर रहे है।

ऊपर की ओर सफेद छत दिख रहा है।

एक सीढ़ी भी दिख रहा है।

जो ऊपर की ओर जा रहा है।

ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।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

की दीवार को फूलों से सजाया गया है।

ये तस्वीर एक सैलून की है।

एक शीशा भी नजर आ रहा है।

सामने की ओर रास्ता दिख रहा है।

जो जंगल की ओर जा रहे हैं।

दीवार पर कुछ तस्वीरें लगाई हुई है।

ये तस्वीर किसी बगीचे की है।

इस तस्वीर में एक अपार्टमेंट दिख रहा है।

बड़े अक्षरों में समीर फास्ट फूड लिखा है।

हरा भरा पेड़ पौधा--

एक आदमी भी दिख रहा है।

इमारत पर एक तस्वीर बनाई हुई है।

इस तस्वीर में एक --]

बड़े अक्षरों में टच --

दो लड़का दिख रहा है।

इमारत दिख रहा है।

हरी घास भी दिख रही है।

करीम नगर डायरी लिखा है।

एक वाहन भी दिख रहा है।

जिनमें तीन बच्चियों ने पीला कपड़ा पहना है।

एक बच्ची ने लाल पहना है।

उनके पीछे हरी घास दिख रही --

आकाश नीला दिख रहा है।

एक कमरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में--

और व्यायाम कर रहे हैं।

खिड़की पे पर्दा--

एक व्यक्ति का हाथ भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक--

गार्डन दिख रहा है।

बहुत झूला भी दिख रहा है।

छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

कई पंखा दिख रहा है।

ये तस्वीर किसी बाजार का है।

कुछ वाहन भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में कई लोग--

पानी का झरना चल रहा है।

लाल रोशनी आ रही है।

दो आदमी दिख रहा है।

इस तस्वीर में कई दुकान हैं।

इनका सजावट किया गया है।

कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी--

जिस पे दो गिलास रखा हुआ है।

कई सब्जियां दिख रही है।

ठेले के पास एक बोरा है।

जिस पे एस_ बी_ आई लिखा हुआ है।

उनके ठीक सामने एक दीवार दिख रहा है।

एक व्यक्ति के हाथ में--

इस तस्वीर में बहुत वस्तु दिख रही है।

रॉयल इनफील्ड का बोर्ड लगा हुआ है।

लाइटें भी लगी हुई है।

उसके सामने एक सड़क दिख रही है।

एक शीशा भी दिख रहा है।

ठीक सामने एक दीवार दिख रहा है।

कई कुर्सियां दिख रही है।

इस तस्वीर में एक--

मैदान में कई गाड़ियां दिख रही है।

और कुछ लोग खड़े हैं।

एक कमरा दिख रहा है।

जिसमें कई गेट लगे हुए हैं।

फिर भी दिख रहे हैं।

एक कपड़ा दिख रहा है।

जो जिम कर रहा है।

एक पंडाल दिख रहा है।

फूलों का सजावट किया हुआ है।

जमीन हरा दिख रहा है।

एक व्यक्ति भाग रहा है।

जिसमें बड़े अक्षरों में भारत पेट्रोलियम लिखा है।

दो लड़का खड़ा दिख रहा है।

दीवार पर कुछ बोतले रखे हुआ है।

और बहुत सारी कुर्सियां नजर आ रहा है।

सामने एक रोड दिख रहा है।

मैदान में छोटे बड़े पौधे --